पीछे में बहोत बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

एक गाड़ी का डिक्की खुला हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बिल्डिंग्स दिखाई मिल रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे इंसान दिखाई मिल रहा है।

और यह कटोरी एक सफेद प्लेट के ऊपर रखा हुआ है।

प्लेट के सामने तीन चम्मच है।

मुझे इस तस्वीर में एक दुकान दिखाई मिल रहा है।

टेबल में सैनिटाइजर बॉटल और डिब्बा भी रखा हुआ है।

मैदान में दो गाड़ी पार्किंग किया हुआ है।

साड़ी के ऊपर चार साड़ियां रखा है।

मुझे इस तस्वीर में एक कमरा दिखाई मिल रहा है।